यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा हैं। जो की बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही हैं। नदी में हमें बहुत सारा पानी नजर आ रहा हैं। पानी का कलर हमें काला दिखाई दे रहा हैं। और उसके बाजु से हमें एक और पुल दिखाई दे रहा हैं।

घर का कलर घर की दीवार का कलर हमें सफेद दिखाई दे रहा है। और उस के उपर हमें बहुत सारे घुमक दिखाई दे रहे हे जो कत्थई कलर के नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे दो जन दिखाई दे रहे हे जो की कम करते हुए दिख रहे हैं।

यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं। हमें यहा पर उसमे बहोत सारी खिड़किया दिखाई दे रही हैं। और हमे यहा पर बिडिंग का कलर सफेद दिखाई दे रहा हैं। और हमें यहाँ पर बहुत सारे झंडे दिखाई दे रहे--

यहाँ पर एक बहुत बड़ा दवाखाना दिखाई दे रहा हैं। दवाखाना के बहार मे हमें कांच का बना हुआ केबिन दिखाई दे रहा हैं। जो की ग्रे कलर का नजर आ रहा हैं। और उस मे बहुत सारे कांच लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पानी का कलर हमे एकदम काला दिखाई दे रहा है। और उस के अंदर हम बहुत सारे लोग टेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमें उस के किनारे बहुत बड़ी एक पहाड़ी दिखाई दे रही हैं। पहाड़ी में हमे बहुत सारे झाड दिखाई दे रहे हैंजो की बहुत अचछा लग रहा है।

पेड़ के किनारे हमें बहुत सारे पथ्थर दिखाई दे रहे हैं। और हमें यहाँ पर एक पहाड़ नजर आ रहा हैं।

यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जिसका कलर हमें ऑरेंज दिखाई दे रहा हैं। और हमें यहाँ पर बहुत सारी खिडकिय दिखाई दे रही हैं। खिडकियों के बाजु में हमे बहुत सारे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर बहुत सारे कांच के स्टॉक लगे दिख रहे है उस के उपर हमें बहुत सारी मुर्तिया नजर आ रही हैं।

हमें यहाँ पर बो गार्डन में बनाई कम्पौंड दिखाई दे रहा हैं। कम्पौंड के बहार हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। जो की बहुत सारी तालि बजाते नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर एक आसमानी कलर का टी शर्ट पहने एक आदमी दिखाई दे रहा है। और एक हमें काली कलर की शर्ट पहन आदमी नजर आ रहा हैं। और हमें यहाँ बहुत सारे गार्डन दिखाई दे रहे हैं। और हमें यहाँ बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और हमें यहाँ बहुत सारे खंबे नजर आ रहे हैं।

लड़के ने काले कलर के कपडे पहने हुए दिख रहा है। और उनके नीचे बहुत सारी चटाई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा कमरा दिखाई दे रहा हैं। कमरे का कलर हमे सफेद दिखाई दे रहा हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा कांच लगा हुआ दिखाई दे रहे हैं।

बहुत ही लम्बी गली दिखाई दे रही हैं। गली के बाजुओ मे बहुत बड़ा घर दिखाई दे रहा हैं। और हमें यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पिलर दिखाई दे रहे हैं। पिलर का कलर गोल्डन और कथा दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर एक बहुत ही बड़ी एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के ऊपर हमे बहुत बड़ा गुम्बन्द दिखाई दे रहा है गुंबद के ऊपर हमे बहुत सारे खंभे दिखाई दे रहे --

हमें यहाँ पर मंदिर की बहुत बड़ी दीवार दिखाई दे रही है दीवार का कलर हमें सफेद ओर काला दे रहा है और दीवार के कलर के ऊपर हमें बहुत सारे वायर जाती दिखाई दे रहे है और यहाँ पर हमें बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे है और हमें बहुत सारे खाली घास दिखाई दे रहा है।